यहां पर एक आदमी बैठा हुआ है जिसने काले और भूरे रंग की शर्ट पहनी है।

यहां पर एक आदमी खड़ा है आदमी ने सफेद रंग का रुमाल सिर पर बांध रखा है।

यहां पे बहुत सी सब्जियां रखी है कुछ सब्जियां झिल्ली में बंद है।

पास में एक दुकान है जिसमें एक आदमी खड़ा हुआ है दुकान के अंदर बहुत सा सामान रखा है।

सामने एक लैपटॉप रखा है आसपास गुब्बारे लगे हुए हैं यहां पर एक पीले रंग का पोस्टर है इसपे आइडिया लिखा है।

यहां पर एक पपीते का पेड़ है जिसमें तीन पपीता लगा हुआ है।

रिक्शे के पास में एक तिरंगा झंडा भी लगा हुआ है रोड पर सफेद चुने से लाइन खींची है।

यहां पर काले रंग का पोस्टर है इस पे कश्यप क्लिनिक लिखा है।

यहां पर एक मशीन रखी है जो लाल रंग की है।

यहां पर एक लड़का खड़ा है इसने बैग टांग रखा है।

शीशे में एक प्रोजेक्ट रखा हुआ है आसपास लाइट जल रही है कुछ पंख लगे हुए हैं।

यहां पे एक पैकेट रखा है यहां पे कटोरी है।

यहाँ पे एक रोड है यहाँ पे टॉवर भी दिखाई दे रहा है जो लोहे का बना है।

यहां पर एक पीले रंग की बिल्डिंग है जो काफी बड़ी है यहां पर कुछ खिड़कियां लगी हुई हैं।

यहां पर शीशे की मेज बनी हुई दिखाई दे रही है।

उसमें खिड़कियां लगी हुई है बिल्डिंग के बाहर एक आदमी खड़ा है यहां पर एक पोस्टर भी लगा है।

यहां पर आस पास छोटे छोटे पेड़ हैं जिनमें फूल लगे हुए है।

यहां पर पत्थर भी पड़े हुए हैं यहां पे मिट्टी भी दिखाई दे रही है।

यहां पर बहोत सी गाय खड़ी हैं जो पीले और सफेद रंग की हैं।

यहां पर गाय हरे रंग का चारा खा रही है।

आसपास खेत है यहां पर एक आदमी भी दिखाई दे रहा है।